मुझे इस चित्र में दिख रहा हैं ये एक ऑफिस हैं।

मुझे इस चित्र में दिख रहा है ये एक--

ये एक शादी का हॉल है।

यही पे कुछ लोग ग्रुप मे अलग अलग बैठे हुए है।

और पान टपरी पे अलग अलग चीजें टंगी हुई हैं।

और कुछ बच्चे ग्रीन कलर की जैकेट पहने हुए हैं।